यह एक किराने की दुकान है। इस दुकान में मैगी कुरकुरे दालमोट बिस्कुट चिप्स टंगे हुए हैं और घर के उपयोग के अन्य सामान जैसे तेलसाबुनशैम्पू हैं।

ये फूल लाल रंग का है। उस फूल में सफेद रंग की धारियां हैं और आस-पास अन्य पौधे भी हैं।

यह एक किताब की दुकान है। यहां पर कई तरह की किताबें पत्रिकाएं रखी हुई है। कई सारे लोग यहां पर किताबें खरीद रहे है। यह किताब की काफी बड़ी दुकान है। यहाँ अलमारियो में कई किताबे रखी हैं।